ते प्यारी प्यारी पर्दे लगे हुए हैं। खत्तेछे लोग बैठे हुए है।

बहोत दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं तरह तरह की नदियां यहां बहोत अच्छी लग रही है जहां लोग घूम रहे हैं।

एक बाइक भी खड़ी हुई है और उसके सामने बोलोरो खड़ी हुई है।

सेल सेल सेल यहाँ सेल खुला हुआ हैं सामने बहोत बड़ा कांच लगा हुआ--

एक ऑरेंज कलर फुग्गा है जहां कपड़ा पहना हुआ पुतला पुतले पर के ऊपर कितने प्यारे कपड़े लग रहे हैं यहां पास टाइल्स भी है बिछी हुई है टाइल्स के सामने एक चेयर लगी हुई हैं।

वहां एक अच्छा विधायक का बोर्ड लगा हुआ है ऊपर से कितना अच्छा ल जच रहा है।

इसमें बहुत सारे सामान की दुकान रखी हुई है एक नीचे और है।

और इस इस पेड़ों के पीछे एक बहुत प्यारी बिल्डिंग है और यहां जमीन है जमीन में छोटे छोटे टाइल्स लगाई हुई हैं और उसके नीचे मिट्टी भी दिख रही हैं मिट्टी और साथ में वहां सीढ़ी रखी हुई है।

सफेद सफेद दिख रहा है और पेड़ पौधो कितने प्यारे लग रहे है वनस्पति--

गेट लगा हुआ है गेट के बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत अच्छी लाइट लग रही है दिख रही है मेरे को साथ में नीचे देखे तो आप टाल्स भी कितनी प्यारी लग रही है और वहां दो वायरे दिख रही हैं वायरो के बीच में एक पोस्टर और लगा हुआ है।

पेंट भी कितना अच्छा करा गया है टाइल्स लगी हुई हैं टाइल्स के नीचे पट्टी बिछाई गई है जिसमें लोग बैठ सके।

सामने एक गड्ढा है गड्ढे के अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

साथ में एक छोटा सा गेट दिख रा है और साथ में वहां एक सामने बहोत छोटा गेट --

और वहां आदमियों के सामने एक घर और सा दिख रहा है जहां लगी हुई हैं यहां कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे है।

और एक सामने बिल्डिंग है बिल्डिंग बहोत अच्छी लग रही है एक जाली जाली के अंदर पेड़ लगे हुए हैं घास भी दिख रहे हैं जहां हिरण चढ़ रहे हैं और कितने सारे हिरण हैं हिरण के बच्चे भी हैं बहोत सारि हिरने दिख रही है।

यह एक पार्क है जहां बच्चे बहोत सारे खेल रहे है ग्रसपट्टी है वह बच्चे बैठे हुए है जो खेल रहे है।

यहां दो अंकल एक आंटी खड़ी हुई हैं जो अपनी फोटो खिंचवा रही है।

यहां एक गेट खड़ा है गेट के बगल में एक और गेट है कार गई हुई है आसमान व्हाइट दिख रहा है।

अंकल है अंकल के सामने एक जे_सी_बी है अंकल एक कैप लगाए हुए है साथ में मूछ उनकी दिख रहीं हैं सामने एक अंकल थ एक और अंकल खड़े हुए--

बस की आवाज आ रही है यहां से बहोत अच्छा कांच दिख रहा है कांच के बहोत अच्छा सजेशन किया गया बहोत ही ब्यूटीफुल लग रहा--